एक मशीन में डाल रहा है। एक पीस खड़ा होकर चला रहा है।

उस स्टेचू के नीचे आचार्य सुमन रचित शिव --

एक बस खड़ी है। ऐ.सी. बस खड़ी है।

ये एक नदी दिख रही है नदी का घाट दिख रहा है।

यह एक डॉकघर है डाकघर है पुराना --